सामान रखा हुआ है शैंपू के और चिप्स के जो पैकेट है वो टांगे हुए हैं दो बॉटल भी टंगी हुई है।

कुछ अन्डर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है आस-पास पेड़ और बिजली के तार देख सकते हैं और बहोत नीला सा आसमान--

एक आश्रम की पिक्चर है आश्रम के एंट्रेंस की पिक्चर है यहाँ पे आश्रम का गेट है जोकि पीच कलर का पेंट किया हुआ है।

वे फूल रेड और वाइट कलर के है और गेंदे के फूलों की लड़ियाँ भी लगी हुई है जिससे की वो बहुत सुन्दर लग रहा है पास में ही एक मेडिकल स्टोर भी है जहां दवाइया मिलती है।

अशोका के पेड़ और दूसरे पेड़ भी लगे है कार्यालय के बाहर बड़ा-सा होर्डिंग भी लगा हुआ है किसी चीज की इनफार्मेशन दी हुई है ऑरेंज और ग्रीन कलर का कार्यालय है।

ये इमेज जो है एक कार के डेशबोर्ड की है जहां पर एयर फ्रेशनर लगा हुआ है।

और उस कार के ग्लास के सामने ही सड़क पर सामने ही सड़क पर एक बहोत बड़ा पुराने जमाने में जो हुआ करते थे जिस तरीके के गेट वो गेट है जहां--

जिसमे बहुत सरे बच्चे बैठे है जोकि स्कूल से आए है या स्कूल से जा रहे--

एक लड़का दिख रहा है जिसने पूरे ब्लैक कलर के कपड़ा पहना हुआ है लोअर टी-शर्ट और ब्लू कलर के पिलर्स और छत है और वाइट ब्लू और वाइट दो कलर में ये जिम जो है बाहर से पैंट किया हुआ है।

और वह किसी ऑफिस के बाहर जो है सरकारी कॉलेज स्कूल के बाहर वो खड़ा हुआ है की बच्चे वहाँ से आएंगे और आइस क्रीम खरीद--